ये ऑफिस है शायद लग रहा है।

नहीं नहीं ये बिजली ऑफिस नहीं है ये एक सरकारी संस्थान होगा यहां घर दुआर अच्छा दिख रहा है बढ़िया क्वालिटी मे दिख रहा घर सब।

बहुत ही अच्छे अच्छा नजारा है|

फव्वारा पानी का फव्वारा छोड़ा गया है और लाइटिंग के साथ ऊपर से झर झर पानी गिरता हुआ बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है।

शायद ये एन.डी.आर.फ. टीम है।

अहम यह भी एक मंदिर है|

यहां बोर्ड में जामताड़ा लिखा हुआ है हिन्दी से जामताड़ा इंग्लिश से जामताड़ा और उर्दू से लिखा हुआ है।

अच्छा कन्डिशन का है रेसटोटेन्ट हमारे जमतारा के अवन्तिका के जैसा है|